इसमें बहोत से रंगो वाले सूट दिखाई दे--

तस्वीर में कई तरह की गाड़ियां दिखाई दे रही हैं।

जो की काले रंग का है।

इस तस्वीर में दो स्त्रियां भी दिखाई--

पर गुलाब के फूल लगे हुएं--

पेड़ पौधे लगे हुए दिखाई दे रहे--

पर बॉन्सी ज्वेलर्स लिखा हुआ है।